आश्चर्य का बात एक लड़का जो है बड़ा सा पत्थर अपना नीचे रखके उसमे बैठा हुआ कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं।

बाल काटा जा रहा है उसके पीछे जो है दो तीन लड़के बैठे हुए एक लड़की भी बैठी हुई है।

और गोल्डन स्ट्राइप से उसमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है सैलून का लाइटिंग बहुत मन पसंद आ रहा है।